इस दृश्य के अंदर एक रेस्टोरेंट है और इसके बाहर एक गाड़ी और कुछ बाइक खड़ी हैं।

और इनके ऊपर एक बड़ा टावर भी नजर आ रहा है।

इस दृश्य के अंदर एक बड़ी स्कूल है।

और कुछ छोटे-बड़े वृक्ष भी नजर आ रहे हैं।

और एक आदमी चल रहा हैं और दुकान के ऊपर काफी बोट भी लगे हुएं हैं और--